ये रेड कलर काब्लु कलर पिंक कलर ग्रीन कलर का है।

यह बहुत ही सुन्दर लगते है फ्लावर्स रखने के बाद।

जिस को कई तरह की सीरीजो द्वारा सजाया गया है।

छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको नर्सरी क्लास में लगाई जाती है।

मोहल्ले के सभी गर्भवती महिलाओं को --

चींज़े उपलब्ध कराई जाते है जैसे कुकर इंडेक्शन गैस चूल्हा कूलर ।

येलो टी-शर्ट पेहन रखी है तथा ब्लू बैग लिए हुए हाथों में मोबाइल लिए हुए जा रहा है।

उसमे एक लड़का सेल्फी ले रहा है फोटो खिचवा रहा है।

बाहर की ओर दो कार तथा बाइक खड़ी हुई है घर की ऊपर चद्दर टिन चढ़े --

स इस फोटो में बहुत सारी भीड़ लगी हुई हैं कोई सभा यहाँ पे चल रही है।

लगता है बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं | छोटी-छोटी सी शॉप्स यहाँ बनी हुई है | लोग आते-जाते दिखाई --

जंगल है तथा वृक्षो से पत्तियां भी झड़ चुकी है | गर्मी का मौसम है सीढियाँ बने --